और गेट अंदर एक टॉवर बना हुआ है टावर में काफी सारी छतरियां लगी हुई है और उसके अगल-बगल काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पे काफी सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है एक एक नीली लाइट दिखाई दे रही है एक झंडा उसके ऊपर लगा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

एक रोड है रोड के बाहर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के बगल मे एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी गेट के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक चर्च है चर्च में एक हस्बैंड वाइफ की मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है फादर उसका नेम मैरेज --